और ये लेक की तरफ लेक बहुत बड़ी है और ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा समुंद्र है ये।

बुक स्टोर में बहुत ज्यादा रश है इसमें खड़े होने की जगह भी नहीं लग रही है और इ --

इसके लिए रेस्टौर वाले ने एक बर्थडे का डेकोरेशन करा है।

ये एक बहुत बड़ा सा आई थिंक एक मंदिर लग रहा है मंदिर के आ आगे एक --

ये एक बहुत बड़ा सा एक आई थिंग रेस्टोरेंट का बाहर का लुक दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट के अन्दर--

वो ब बडे पार्टी ऑर्गनाइज होने वाली है बड़े पार्टी ऑर्गनाइज के चक्कर में--

रेस्टरन्ट वाले ने एक बैलूनस लगाए हैं बैलूंस बहुत प्यारे और बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं और बैलूनस का कलर बहुत ही अलग और डिफरेंट लग रहा है।

और एक छोटे बच्चे ने बनियान पहन रखी है और निक्कर पहन रखी है दूसरे बच्चे ने ब्लैक टी_शर्ट और ग्रे कलर की--

और दो बच्चे इनके पीछे खड़े हुए हैं एक ने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है और एक ने --

सारे बसेस एंड बाइक पे सब रुकी हुई है ऊपर ब्रिज चल रहा है --

ये दिखाय रा ये लग रहा सेट टाइप की सीनरी है और सिन सीनरी की तरह यहां पर एक ब्रिज चल रा है और रोड पे लोग आदमी चल रहे हैं।

ये एक बहुत छोटा सा पेट्रोल पंप बना हुआ है ये मेनली आई थिंक पेट्रोल पंप हाईवे पे बना हुआ है जिसका नाम है श्री बालाजी पेट्रोल पंप --

यहाँ पर बहुत सारी गाड़ी आती है और बहुत सारे बाइक्स आते हैं जो अपनी --

और ये बहुत अच्छा पेट्रोल पंप लग रहा है और ये पेट्रोल पंप का जो लुक बहुत प्यारा लग रहा है व्हाइट कलर का इसकी मशीन है।

ये एक बहुत अच्छी सी आई थिंक ये ये फि फि म मा मछुवारे लग रहे हैं मछवारे वो होते हैं जो पानी में से फिश निकाल के --

यहाँ से फिश ले जाके मार्केट में सेल करते हैं --

ये एक बहुत बड़ी सी एक बिल्डिंग लग रही है इस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी कार्स खड़ी हुई हैं और बिल्डिंग बहुत प्यारी लग रही है बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग के जो एलिवेशन है।

और ऑफिस की जो फ्लोर तो इतनी स्टाइलिश लग रही है कि इसका लुक होटल जैसा उसका ऑफिस है।

लोग यहाँ पर वॉक करने भी आते हैं और ये बहुत अच्छा व्यू आ रहा है।

अल्ट्रा साउन्ड लोगों का चेकअप होता है और उसके अंदर की सारी चीजें शो होती है।

आई थिंक ऊपर का जो स्ट्रक्चर इसका भी रेडी हो रहा है नीचे तक का बिल्डिंग बन चुकी है ऊपर का भी पत्थर की बिल्डिंग बनी हुई है जो अभी बन रही है।

ये एक बहुत बड़ा सा आई थिंक साइबर कैफे बना हुआ है ये साइबर कैफे मेनली --

कंप्यूटर पर खुद बैठके अपना ऑनलाइन सारा वर्क करते हैं आज कल आज कल की दुनिया ऑनलाइन है सारी।

ये एक बहुत अच्छा सा जिम लग रहा है ये जिम में बहुत अच्छी-अच्छी बहुत स्टाइलिश लाइनिंग हो रही है और इस जिम का जो एंबियंस है बहुत ही प्यारा एंबियंस लग रहा है।

ये एक बहुत बड़ा सा एक गार्डन है इस गार्डन के अंदर बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और ग्राउंड में बहुत सारी ग्रास है।

ये एक आई थिंक क्लासरूम लग रहा है इस क्लासरूम के अंदर पूरा क्लासरूम खाली है क्योंकि इस समय लग रहा है कि अभी ऑफ होआ है क्लासरूम के अंदर --